उम बाहर एक बाइक खड़ी हुई है और ये कोई सा घर जैसा है यहां पर लाइटें लगी हुई है बोर्ड लगा हुआ है।

पोस्टर दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का जिसपे कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर तीन बाइक दिखाई दे रही है एक बाइक पे हेलमेट भी रखा हुआ है ।

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है और ये तीन मंजिल जैसी बिल्डिंग ---